है ऐसा उसपे अच्छा-अच्छा आके फोटो निकलवा रहा है।

जो की वो जिम नहीं कर रहा है नहीं बहुत अच्छा लग रहा है इसमें सेहत बना रहता है करने से दिखता है।

जो कि देखने में बहोत सुंदर लग रहा है।